दिख रहे हैं और यहां पर--

फोटो में नजर आ रहा है यहां पर--

पिक्चर में नजर आ रहा है।

और यहां पर बहोत सारी मिट्टी है।

रहा है यहां पर--

यहा पर बहोत सारे वेजिटेबलस रखी हुई है।

एक बहुत बड़ी शादी हो रही है।

रहा है। यहां पर एक चीज है।